कैफे लगा हुआ है इसमें इसका नाम है सुबा पापुलर ।

हेलो दोस्तो आप देख सकते हो सामने आपको सीढ़ी नजर आ रही है।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेडिकल वगेरह है यहाँ पर दवाईयाँ वगेरह मिलती है ।

देखिए वहां पर पेड़-पौधे वगैरा लगे हुए हैं।

तो सभी साथ में बैठके ये पूजा कर रही हैं।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर ये स्विमिंग पूल हे। --

ये कार आगे से पूरी डैमेज हो गई है तो इसको ठीक कर रहे हैं।

आप देखिए ये जीप देखने में काफी जादा सुंदर लग रही है।

आप सामने पेड़ देख सकते हो जो यहां पर पेड़ --

तो सब लोग आप देख सकते हो नीचे कितने जादा खड़े हुऐ हैं।

तो जो सेठ जी हैं तो इनकी पूजा कर रहे हैं यहां भगवान जी रखे हैं उनकी।

वो इसपर इसक रहे हैं और मस्ती कर रहे हैंआप देखिए सामने तीन बच्चियां हैं।

और यहां पर वगैरा लगी गई है छोटी-छोटी।

देखिए ये नदी हे नदी में ये नाव चल रही है।

ये काफी बड़ा कॉलेज ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।

जे सागवाना की लकड़ी रेहती है वह इससे बनाई गई हैं।

यहां लोग अक्सर आते-जाते रहते हैं जिम में।

जो कि खाली नजर आ रहीं है आप देखिए यहां प --

जोकि यहां से जा रहें बस में बैठके

तब देखिए यहाँ सवेरे-सवेरे रनिंग करने के लिए भी आते हैं ।